पास बहोत सारी बाइकें खड़ी हैं।

देखिए आप और हम सभी यह जान --

कि ये किसी चीज की--

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है।

इस दुकान से चाय अच्छी क्वालिटी की मिलती है।

हुआ है। इस गार्डन को --

गंगा जी है और यहाँ पे दो --